और बलवाही मिटटी नजर आ रहल हन।

सामने एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है जिसमें लोग गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं और कुछ गाड़ियां वहाँ से निकल भी रही हैं।

स्कूल बस लगा हुआ है इसमें छात्रों का पढ़ाई लिखाई होता है शिक्षण संस्थान है।

दिवाली का माहौल है घर पूरे सजे हुए हैं लोग बाहर पटाखे उठाके जला रहे हैं मिठाई खा रहे हैं।

और लोग इसमें खड़े हुए है इलेक्शन होता है यहां।